ओर ग्रीन कलर का और व्हाइट कलर का ये वायर लच्छा है और काफी बड़ा लच्छा है।

जिनमे गोल्डन कलर की बीच मे कोई ओर चीज लगी है और उसके ऊपर नीचे रेड कलर की लगी हुई --

और बहुत ही ज्यादा बैलून इसमें लगे हैं और बहुत ही खूबसूरत है केबिन भी शानदार बने हुए हैं।

और इस किले की दीवार के ऊपर जो है मट्टी लेवल में है और जिसकी घास हरे कलर की है।

और इसके दोनों सिरे पे जो हैं दोनों जो किनारे होते हैं उसपे अच्छी खेती हो रही हैं।

और ये जो है सर्दी का मौसम है क्योंकि इसने जैकेट भी पहन रखी है और ये ऐसा लगता है जैसे बस से उतर के स्टेशन की ओर जा रहा है और स्टेशन की छत --

तस्वीर हैं किसी शॉपिंग माल की हैं जिसके आगे स्लैट नहीं है और इसका ऐड हो रहा हैं।

एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए इसमें स्टैर्स बनी हुई हैं जोकि आटोमेटिक है चलती हैं और इसके जो फ्लोर पे एक गाड़ी खड़ी है।

ये एक सरकारी दफ्तर है जिसकी दीवारों पर दो तरह का कलर हो रहा है एक लाल और दूसरा पीला. --